हम देख सकते हैं यहां पे एक फंक्शन चल रहा है।

और यहां पे कुछ लोग ड्रम भी अपना अपना कांधे में लटका के--

पानी यहां पे बहोत ज्यादा दिख रहा हैं।

तो हम देख सकते है ये एक गैरेज जैसा दिख रहा है।

और हम देख सकते हैं वहां पे एक आदमी रिपेयर कर रहा है।